यहाँ पर एक रिसेप्शन है रिसेप्शन के ऊपर बहुत सारा फैन लगे है वहाँ पर लाइट है तीन --

एक शादी का हाल है ये उसके यहां पर एक अंकल बाहर बैठे हैं चेयर में--

लोखंड का वहाँ पर खंबा है उसके यहाँ पर ने ना पिंक कलर का पूरा ये फ्ला--

और जिसके यहां पर गुलाबी कलर का एक मंदिर दिख रहा है।

फूल का पूरा डिजाइन किया हुआ हैं जो गुलाबी कलर हैं और वहाँ पर लाल कलर हैं ।

उ ब्लू कलर का है उसका टायर है टायर में कलर कलरफुल सब है।

और उसके यहां पर पूरा लोखंड का छोटा छोटा जाली है।